कुछ डिफरेंट कलर के भी हैं हलके ग्रीन कलर के भी हमे नजर आ रहे हैं लाइट ग्रीन कलर के भी हमे नजर आ रहे हैं कुछ रेड कलर के हमे कुछ फूल जैसा हमे देखने को मिल रहे है पीछे की तरफ हम देख पा रहे हैं शेड लगा रखी है पूरी ग्रीन कलर की पर --

और देख सकते हैं की ऊँचे नीचे पर्वत से हमे देखने को मिल रहे हैं और बहोत लंबे लंबे पेड़ हमे उगे हुए पहाड़ों पर देखने को मिल रहे हैं और हम देख पा रहे हैं की यहाँ पे काफी सारी भूरी भूरी घासें उगी हुई हैं।

चित्र में हम देख सकते हैं की हमे यहाँ पे बहता हुआ नदी सी देखने को मिल रही है और देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम काफी सारे बड़े बड़े पत्थर है जोकि नदी में रहते ही हैं।

खेती में से वो कुछ क-उखाड़ते हुए कुछ करते हुए हमे नजर आ रहे हैं सामने की तरफ हम उसके आगे और जाएं तो हम देख पा रहे हैं वहाँ पे काफी घना सा जंगल हमे देखने को मिल रहा है जो की पेड़ों की वजह से ही हो रहा है और कुछ --

अ जिसने इस टीशर्ट पहनी हुई है और वो नीचे मुँह कर के बैठा हुआ है औ हम देख पा रहे है की उस ट्रक में से कुछ पाइप लगी रखी है और पाईप जा के वो किसी बक्स के अन्दर ज़मीन के अन्दर जाते हुए हमें दिख रही है नीचे की तरफ एक बाल्टी भी लगी हुई है स्टील की हम देख पा रहे है बायां जो ज़मीन है --